मुझे यहां पे तीन बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पेहनी हुई है और रेड कलर की शर्ट पेहनी हुई हैं एक बॉटल भी नीचे जमीन पे रखी हुई है।

दीवारों पे फोटो फ्रेम दिखाई दे रही है और बहोत सारे खाने बने हैं जिनमें अलग अलग टाइप की दिवाइयां रखी हुई हैं।

यहां पे बहोत सारी कॉपी भी मुझे नजर आ रही है कुछ लोग कॉफी पीने आए हुए हैं आसपास हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं।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

देखने में यह मूर्ति बहोत ही सुंदर लग रही है।

और उन्होंने वहां पे भी समान को पकड़ रखा है आस पास मुझे हरे भरे खेत और पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग की छत के ऊपर मुझे रेलिंग भी दिखाई दे रही है और बाहर एक गेट नजर आ रहा है।

जहां पे एक लड़का मुझे एक काउंटर के पास बैठा हुआ नजर आ रहा है।

और उसने येलो कलर की शर्ट पहनी हुई हैं।

आस पास मुझे घर दिखाई दे रहे हैं सैलून के बाहर रंग बिरंगे गुब्बारों से इसे सजाया गया है और कुछ लोग यहां पे अपनी पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं।

जहां पे कुछ लोग मुझे टेबल चेयर के ऊपर खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पे मुझे बहोत सारे टेबल और चेयर्स दिखाई दे रही है।